यह एक ऑफिस हैं।

काफी भीड़ है और काफी धूमधाम से पूजा हो रहा है।

ये शादी का मंडप बनाया गया है और यह मंडप काफी अच्छी तरीके से सजाया गया है इसमें बहोत सारे लाइट्स लगाए गए हैं फूल लगाए गए हैं और यह काफी अच्छा दिख रहा है।

मशीन है और इससे बहुत प्रकार के कार्य होते है और मशीन से कार्य बहुत ही काम समय में हो जाता है और मशीन को लोग चलाते है चलने के लिए लोग रखे जाते है।